सामने से एक व्यक्ति आ रहा हैं जिसने सफेद कलर का पोशाक पहना हुआ है। कुछ व्यत्त्कि स्कूटी चला रहे हैं और कुछ व्यक्ति बाय --

और एक एक महिला खड़ी हुई है जिसने गुलाबी कलर का कुर्ता और हरे कलर की सलवार पहनी हुई है। जिसके बाल काले कलर के है। बसों का कलर फिरोजी हरा लाल नीला है।

इस तस्वीर में हमें एक फैक्टरी दिखाई दे रही है जिस पर ब्लू कलर का इसमें फिरोजी कलर के शेड डले हुए हैं। फैक्ट्री के साइड में बहुत सारे बिजली के खंबे हैं और सामने सड़क है।

सड़क पर दो व्यक्ति जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक ने अपने कंधे पर बैग टाँगा है जिसका कलर लाल है। आसपास बोहोत सारे पेड़ पौधे हैं और सामने एक म्म बड़ा खम्म --

एक कांच के आगे गेट लगा हुआ है कांच के गेट के ऊपर एक और बैनर लगा है जिसमें नोकिया लिखा है। साइड में बहोत सारी ईटे रखी हुई है और सामने एक सड़क है।

रेड कलर का कम्बल और सफेद कलर की चादर बिछी हुई है। दो तकिये लगे हुए हैं और एक कुशन लगा हुआ है। बेड पर एक बेग पड़ा है। जिसका कलर काला है। साइड में स्विच लगा हुआ है।

इस तस्वीर में हमें एक पोल दिखाई दे रहा है जिसका कलर हरा है और उसके पाए कथई है सामने तीन लाइट लगी हुई है जिनका कलर सफ़ेद है ऊपर टिन शेड है।

ये बहोत ही खूंखार है। ऊपर कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं और आसपास एक मैंदान है जिसमें छोटी-छोटी सी घास उग रही है।

सामने एक ऑटो रिक्शा है जिस पर एक पुरुष बैठा हुआ है जिसने सफेद कलर का सर में गमछा बांधा है।

ये बहोत ही सुंदर और मनमोहक दृश्य प्रतीत कर रही है। खेत के चारों तरफ बहोत बड़े बड़े पेड़ हैं। ऊपर खुला नीला आसमान दिखाई दे रहा है।

सामान रखा हुआ है। सामने ब्लू कलर एक बोर्ड लगा हुआ है। जिसमें सरदार बाबा सिंह और महान नेताओं के फोटो लगे हुए हैं।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

तस्वीर में हमे एक पुराना क़िला दिखाई दे रहा है जिसमे बहोत सारी सीढ़ियां है आस-पास --